हरा-भरा है दिखने में गाछ-ब्रिछ घांस -भूंसा बहुत सुन्दर लग रहा है दिखने में पानी भी चढ़ रहा है

बहुत अच्छा से सजाया हुआ है और एगो फूल से सजाया हुआ है इधर बीच-बीच में सजाया हुआ इधर देखिये बैलून लगाया हुआ है बीच में बहुत अच्छा टाइल्स लगाया हुआ है ऊपर में लाइट लगा हुआ है।

हीं इधर परती दिखाई दे रहा घास है हरा-भरा गाछ-वृक्ष बहुत सुंदर लग रहा देखने में पानी है उधर घर है मकान है दिखाई --